यो आदमी कुछ मशीन ले रहा है हाथ में इसके पास बहुत बड़ा सा कमरा है।

सामने एक बहोत बडडा घर लाग राह्या है उसकी लीली लीली खिड़की है।

काली और दौड़ी गाड़ी खड़ी है ये कोई शहर का एरिया लग रहा है।

बहोत बड्डी दुकान है उसके पास एक और बोरड लाग रहा है।

यहां पे बिजली के बड़े बड़े तार हैं और बहोत सारे लोग खड़े हैं बड़े बड़े यहा बोरड लग रहे हैं।

छोटे छोटे गमले लाग रहे है बहोत सारे बच्चे खड़े है और अपना प्रोजेक्ट बना रहे हैं कुछ बच्चो ने मास्क लगा रखा है।

यहां पे एक छोटा सा झोपड़ा भी है ये दोलें रंग का है।

और हरे रंग का कार्पेट बिछ रहा हैं इसके पास एक नीम का पेड़ है।

यहां पे बहोत सारी पेंट बुट सब धरी है दो तीन आदमी भी बैठे हैं।

एक सफेद रंग का काले रंग का गुब्बारा लगा हुआ है।

बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए है बहोत टेस्टी खाना--